और वाइट तकिये और एक रंग-बिरंगा तकिया भी दिख रहा है।

और हमे यहाँ पर कोल्डड्रिंक्स की बॉटल्स भी दिख रही है।

और यहाँ पर हमें कपड़ों की दुकान भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक मस्जिद दिखाई दे रही है | जहाँ पर ऊपर हमें खुला आसमान दिखाई दे रहा है |

और बल्ब का होल्डर भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ चारो तरफ हमें अ पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं और ऊपर खुला आसमान भी।

मकान दिखाई दे रहा है जोकि पिक और ग्रीन और वाइट कलर से पेंट किया हुआ है |